रेज़र टाईप होता है वो उनसे दाढ़ी उनका बना रहे हैं सामने देखिएगा तो दूकानदार ज दूकानदर अपने दुकान में बहुत से समान --

ऑर्गेनाइज किया गया है जहां पे बहुत सारे लोग अपने पार्टी में एन्जॉय करने आए हुए है सामने देख सकते है एक रास्ता है जो टाइल्स से बना हुआ है।

इसमें एक मार्केट है बाजार कहते हैं इसको बाजार में देख सकते हैं सब्जी का बाजार लगा हुआ है जरा सामने भिंडी बोरे में भिंडी भर रखी हैं लाल मिर्ची है मिर्च है।

और ढेरों सारे दुकाने लगी हुई है कोभी भी दिख रहा है और दिन धूप का धुप किये हुए दिन का समय।

लोग यहाँ अपने पैसे जमा करते है साथ ही जमा करते है निकालते है बचट खाता ओपन करवाते है सामने देखिए दो दो-तीन दो लेडीज ख दो लेडीज खड़ी है एक जेंट्स है और एक एकाउंट हो --

ये तो चिड़ियां घर का सीन है यहाँ देख सकते हैं नदी --

जिसमें से दो कछुए ने अपना सिर उठाए हुए हैं एक कछुआ बेचारा अपना सिर नीचे झुकाए हुए है सामने से देख सकते हैं यहाँ पे --

कलर के है देख सकते है हरा पीला का ये कोम्बिनेशन है दूसरा --

झालर टांगे रहे तो वो हो गया छोटा-मोटा फूल का भी गुलदस्ता सामने रखा हुआ है।

ये एक मकान है और मकान के अंदर भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का ब्रांच है।

जो देख सकते है सेवन-अप है थम्स-अप है।

माज़ा है बहुत सारे सामान के गुटका पान भी बिक रहा है यहाँ गुटका का भी दुकान है।

यहाँ ऊँचे-ऊँचे मकान कह सकते है या तो अपार्टमेंट ।

जमी रही है इतने गंदे पानी हो चुके हैं की उसमें हरे-हरे --

इसमें दो नाव दिख रहे हैं एक नाव पर बहुत सारे लोग जो हैं सफर कर सकते है नदी की इस पार-उस पार जाने के नाव का लोग जो प्रयोग करते हैं।

अ कुछ कौवे आस-पास मंडरा रहे है पानी भी दिख रहा है एक --

जिम में का है ये एक आदमी जो है अपने जिम में जो शीशा लगा रहता है आईना --

दो डॉक्टर है जो पशुओं के इलाज करते हैं आप देख सकते हैं कुत्ता --

जो दोनों साइड से पतवार से पानी काछ - काछ कर आगे-पीछे बढ़ाया जाता है तो देख सकते हैं तीन लड़कियाँ --

लाइने लटका के रखी गयी है ताकि ग्राहक आ के यहाँ से खुद से खरीद सकते हैं |

इसमें सामने एक सड़क है और सड़क के दोनों साइड जंगल पेड़-पौधे --

सामने देख सकते है ताड़ का पेड़ है इधर देख सकते है झाड़ियाँ हैं।

सामने सड़क है सड़क के दोनो एक साइड वाइट उजले रंग की पट्टी है बीच-बीच में पट उस साइड का जो पट्टी है डॉट - डॉट दिया हुआ है।

लड़की के पीछे देख सकते है कुर्सी है उस लड़की के पीछे आप देख सकते है चटाई है और इस घर का जो है --

ऊपर में लाल रंग का बीम से रंगा हुआ है।